में बहुत कोई आदमी बैठे हुए हैं। पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर कोई कुर्सी लगा हुआ है। कुर्सी एकदम लाल है हुए है। दिखने में अच्छा लग रहा है। बहुत पसंद आ रहा है।

पेट्रोल लेने आया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकि ये सब नया भी है। अ ये सारा पौधा लगाया गया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।